और ये रेड कलर का दिख रहा है और यहाँ पर साइड से एक जीना भी गया हुआ है।

चिली आ फूड कॉर्नर दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक दुकान है जिसका नाम है रेड चिली फूड कॉर्नर और यहाँ पर एक ब्राउन कलर का लकड़ी का कुछ रखा हुआ दिखाई दे रहा है।